अ सेफ्टी के लिए अ अपनी सेफ्टी हुक जो है वो अ रस्सी को बंधी हुई है।

यहाँ पे आ इस फोटो में कोई स्कूल का फोटो है जहाँ पे छोटे बच्चे जो है वह नीचे बैठकर --

इस फोटो में अ-अ आपको ऑटो रिक्शा दिख रहा होगा और अ जो ऑटो रिक्शा है वो लाइन से खड़े हैं जो की सवारी की राह देख रहे हैं।

अ एक व्यक्ति जो है वो इंगलाइन्ड जो बीड़ होता है जो बैंच होता है उसके ऊपर बैठा हुआ है।

और अ वो कुछ सोच रहा है और बाजू में एक व्यक्ति खड़ा है जिसने कामोफ्लाज की पैंट पहनी हुई है।

आई. एम. सी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बौराड़ी नई टिहरी टिहरी गढ़वाल।

आ जो अ इंडिविजुअल के कैबिन्स होते है वो कैबिन्स यहां पे दिखाई दे रहे है अ हर केबिन में अ-अ जो --

कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं जो की आ सलून का इंस्ट्रूमेंट्स है बाजू में रैक के ऊपर आ --

अंदर से सिमिट्रिकल डिजाइन किया हुआ है एक तरफ जो है अ शंक का सिल्वर कलर का डिजाइन है और एक तरफ जो है --

वहाँ पे बचें जो हैं बहुत ही सारी जो हैं चीज़े वो दिखाई दे रहें हैं अ पूजा के सामगिरि में कुछ गंगा --

यह फोटो जो है किसी स्टेशनरी शॉप का फोटो है। जहाँ पे आ बहौत सारी चीजे जो हैं सामने आपको दिखाई दे रही होगीं आ यहाँ पे --

उसके अंदर बहोत सारी चीजे जो है वो दिखाई दे री है सामने ही अ जेरोक्स की मशीन दिखाई दे रयी है जो की वाइट और ग्रे कलर की है।

और उसके बाजू अ कहा सुन टेक्सटाइल ऐसे लिखा हुआ है।

वहाँ पे एक लड़की जो है वो टेक्सस्टाइल खरीदने के लिए आई हुई है और सामने अ कपड़े के बहुत सारे कलर कलर के चीजे जो है वो रखी हुई हैं।

यह फोटो जो है एक अंडर ग्राउंड पार्किंग लोट का फोटो है जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ जो है वो पार्क की हुई हैं आप देखो गे तो यहाँ पे स्कॉडा की औटीविया है।

और यहाँ पे साइड में जो है एक होर्डिंग है जिसके ऊपर नवरात्रि की होर्डिंग दिखाई दे रही है।

यह फोटो जो है जीम मे जिम करने के बाद आ जो बन्दे ने फोटो लिया हुआ है उसके आजु-बाजु बहुत सारे जिम के इन्स्टूमेंट है।

यह फोटो जो है अ किसी शॉपिंग मॉल का फोटो है जहाँ पे रेक रखी हुई है और रेक के ऊपर बहुत सारी चीजे जो हैं वो रखी हुई हैं।

वहां पे आ एक घडी दिखाई दे रही है और ये टावर जो है वो लाल कलर का और ब्राउन कलर के कॉम्बिनेशन मे बड़ा खड़ा हुआ है।

यह फोटो जो है अ एच.डी.एफ.सी बैंक की जो होती है उसकी शटर की फोटो है और वहाँ पे अ कुछ लोग जो है वो शाखा मे आ रहें हैं।

यह फोटो जो है वो किसी रिपेरिंग जो होती है वहा का फोटो है जो कि डेंटिंग पेंडिंग का काम जो है वो कर रहें हैं।